और लाईट जल रहा है पीछे मे दिखाई दे रहा है।

वहां पे तीन-चार पांच-छे विंडोज दिखाई दे रहा है यहां पे बोलेरो दो खड़ी है और यहां पे कुछ लोग है।

यहां सामने में खेत जैसा दिख रहा है यहां पे बहुत सारी घासें दिखाई दे रही है और ऊपर से पहाड़ दिखाई --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

ब्लू कलर मे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

सामने खड़ी है ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है पीछे में एक जेंट्स भी दिख रहे हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है ऊपर में जो आसमान है वो भी--

और सामने कुछ पत्थर जैसा कुछ है कलार कलार मैं दिख रहे हैं कुछ पेड़ पोधे पीछे मैं दिखाई रहे है।

यहां सामने में अजीब सा दिखाई दे रहा है जो बॉउंड्री बना करके कुछ --

जेंट्स खडे दिखाई दे रहे है जो पीला कलर का शर्ट हुए है और अंदर मे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है यहां पे --